ऊपर की तरफ बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा हैं जिसमें की किसी राजधानी का नाम लिखा हुआ हैं।

और उसके ऊपर पास एक हेलमेट रखा हुआ हैबिल्डिंग के कलर क्रीम है।

व्यक्ति ने लाल कलर की टी-शर्ट और काले कलर का जीन्स पहना हुआ है।

सामने के तरफ एक रथ दिखाई दे रहा है जिसमे की सात घोड़े बने हुए है।

यहाँ पंडाल के नीचे गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति के नी --

और नीचे की तरफ एक लड़का अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है--

काफी पुरानी गुफा दिखाई दे रही है।

ये एक मुझे एक इमारत दिखाई दे रहे है इमारत के बाहर बड़ा-सा गेट लगा हुआ है गेट के पास बाउंड्री है और सामने की तरफ दो बड़े-से पेड़ लगे हुए है। ]